बगीचा में दो तरफ का रास्ता बना हुआ है।

राइडर राइडर बाइक भी यहां उपलब्ध है।

और एक गुलाबी रंग का कमीज़ पहने हुए हैं।

जिसमें अभी कोई व्यक्ति नहीं है।

ऊपर में ए_सी भी लगी हुई है खाने के लिए टेबल लगी है टेबल पे कुछ प्लेट रखे हुए हैं।

इस दुकान में अगरबत्ती मैगी सेरेलेक्स कुरकुरे आदि ये सब रखी हुई है।

लकड़ी पे कुछ सामान भी रखे हुए है।

बगल में नदी भी है और उसके ऊपर पुल बना हुआ है घास फूस भी लगी हुई है।

एक लेडीज माक्स लगते खड़ी है आइसक्रीम भी है यहां पे।

यह कोई दफ्तार का तस्वीर है जिसके बाहर एक मोटरसाइकिल लगी हुई है।

नदी में एक पुल बनी हुई है लड़के उजला रंग का कमीज पहना हुआ है।